इस चित्र में हमें एक बस का अड्डा दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमें कुछ फुग्गे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमें बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही--

पेट्रोल पंप नीले और लाल रंग का है आसमान बिल्कुल साफ है।

पेट्रोल पंप के आसपास हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक जिम नज़र आ रहा है जिसका नाम फिटनेस सेंटर है।

स्विमिंग पूल में एक आदमी नहा रहा है।

यहां पर हमें बहोत सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं।

इस चित्र में हमें दो सोफे दिखाई दे रहें हैं।

इस चित्र मैं हमे एक नदी दिखाई दे रही है नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर नजर आ रहे हैं।

आसमान में हमें बादल दिखाई दे रहे हैं।

रेस्टोरेंट की दीवारें ईंट की बनी है।

यहाँ हमें लाल और सफेद कुर्सी दिख रही है।

पीछे हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक कार नजर आ रही है जो कि सफेद रंग की है।

इसमें हमें गेंदा गुलाब और सफेद गेंदा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक डेरी का दू दिख रही है जिसका नाम डेरी --

कुछ लोगों ने मुंह में बवाजा रखा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक जगह दिखाई दे रही है।

एक लड़के ने सफेद शर्ट पहनी हुई है जोकि नीली बॉल पर निशाना लगा रहा है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं बड़े-बड़े बादल दिखाई दे रहे हैं।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

पीछे हमें बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।